ये कोई जगह है जहाँ पे सामान वगेरा मिलता है और यहाँ पे दो पोस्टर लगा हुआ है जिस पे कुछ कुछ लिखा है और यहाँ पे दो तिला पड़ा है जो कि बहोत ही अच्छी है।

यहाँ की बिलासा कॉलेज हैं यहाँ पे लड़कियाँ पड़ने आती हैं यहाँ पे लड़के नही पड़ते हैं और यहाँ पे कुछ टीचर हैं जो चल रहै हैं कुछ स्टूडेंट है जो बैठे हुए हैं।

यहाँ पे एक घर है घर को बाउंड्री से सजाया गया है और यहाँ पे एक यहाँ बड़ा-सा गेट लगा है यहाँ पे बड़ा पत्थर है ईट है और मिट्टी को खोद के गड्ढा किया गया है आप देख सकते है यहाँ पे पेड़ भी लगा है।

ये बिलासपुर हवाई अड्डा है जो की चकरभाठा में स्थित है और ये हवाई अड्डा में घुसने से पहले ही यह ये सामने का प्रोसेशन है यहाँ पे लोग बाहर जाते है तो हवाई जहाज में चढ़ के जाते है जो बड़े लोग जाते है।

यह नदी है और नदी में ब्रिज बना है और पानी का बहाव है जो काफी तेजी से है और बहोत ही पानी है और बहुत सारे लाइट्स का खम्बा लगा है इधर नीचे में घास है और बगल में घर बना है।